ऊपर वाले इंसान ने पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और नीचे वाले इंसान ने पर्पल कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है जो बहोत अच्छा लग रहा है।

जिनने येलो कलर के कपड़े पहन रखे है उनके पीछे परपल कलर से कपड़ा लगा हुआ है। उसके बाजु में एक ब्राउन कलर का गेट बना हुआ है उसके बाजु मे एक व्हाइट कलर का दीवार है।

इसके पीछे में गटटूओ से बना हुआ घर है उसके ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है जो घूम रहा है।

जिसने ब्लैक कलर के शूज भी पहने हुए है यह दृश्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

जैसे की ये फोटो पे दिखाया जा रहा है यह बहुत सारे लोग खड़े हुए है लोगो के--